यह एक साड़ियों की दुकान है जिसका नाम है शिल्प श्री।

यहां पर दो बालक आनंदित महसूस आनंदित स्वयं को आनंदित पा रहे हैं।